उचके हाथ में बॉल दिख रही हैं मुझे। सामने की तरफ मुझे बड़ा सा मैदान दिख रहा है।

आ लड़की के साइड के बाल आधे कटे हुए हैं। लड़की ने ब्लैक और वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक मार्ट दिखाई दे रहा है और सामने बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

इसने पिंक कलर शर्ट और ब्लू पैंट पहना हुआ है।

ऊपर फ्लावर से डेकोरेशन किया है। फ्लावर के नीचे पिंक पर्दों से डेकोरेशन किया हुआ है।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

इसमें सामने मुझे एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा हैं जिसका कलर वाइट है।

गार्डन में एक झूला दिखा रहा हैं जोकि व्हाइट कलर का है। जिस पर एक बच्चा बैठा हुआ है।

इसमें मुझे एक अंकल दिख रहे हैं जिसने पर्पल कलर शर्ट पेहना हुआ है।